एक पहाड़ है उसमें से पानी आ रहा है हरे - भरे पेड़- पौधे है व्हाइट कलर का पानी दिख रहा है पथर हैं।

यहाँ तीन ऑटो दिख रहे है एक ऑटो खाली है एक ऑटो में आदमी बैठा हुआ है उसके अगल- बगल अअअ दुकान है अअअअ आदमी लोग चल रहे है पेड़ है एक बड़ा -सा --

अअअअ एक शिव भगवान है का मूर्ति है ओ उसके अगल- बगल में बहोत सारे लोग हैं ।

एक घर बन रहा है वहाँ तीन लड़के है तीन लड़की है दो लड़की अअअ एक अअअ ड्राम टाइप का है उसमें पानी भरा हुआ है एक पाइप है एक --

एक मछली की दुकान है वहाँ तीन लोग दिख रहे है दो महिलाएं है एक जेन्स है जिंदा दिख रहा है मछली अअअ बकेट --

एक दुका एक दुकान है वहाँ गनेश भगवान का मूर्ति रखा हुआ है उसके पीछे बुक्स है फेविक्विक है एक टेबल के ऊपर रखा गया है मूर्ति को --

एक रेस्टोरेंट है वहाँ तीन ते आ तीन प्लेट रखे हुए है आ चार चमच्च रखे हुए हैं ।

एक फ्रिज का दुकान है अम्म जहाँ अ फ्रिज रखे हुए है अलग - अलग साइज़ के फ्रिज रखे हुए है वो रीबन से रीबन और तिरंगा कलर स्टिकर से डेकोरेट हुआ हैं ।

एक नाई है तीन लड़के है नाई एक लड़के का बाल कट रहा है वहाँ एक चेयर हैं ।

आसमान दिख रहा है कलरफ़ूल --

यहाँ एक बिल्डिंग है वहाँ पे एक दरवाजा है वहाँ पे एक लड़का बैठा है उसके थोड़ा सा आगे बॉउन्ड आ घेरा टाइप का हैं ।